व्यक्ति भी खड़े है ये दो मंज़िला ईमारत है और नीचे का दृश्य ही बहुत सुन्दर और मनोरम है ।

जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं ये।

ये मकान दु मंजिला श श शायद लग रहा है।

ये जैसे देखने से लग रहा है ये नृत्यशालाय है जहाँ नृत्य किया जा रहा है नृत्य का अभ्यास किया जा रहा है ।

ये सब्जी मा-मार्केट है। जो तरह का सब्जी-साग बेच रहे हैं बिक रहा है और बोहोत लोग सारे यहाँ पर हैं। ग्राहक जो अपना-अपना --

सब्जी-साग का खरीददारी कर रहे खरीद रहे है और यहाँ पर बोहत ही बड़ा बाजार है मार्केट ।